इस तस्वीर मे जो फोटो है इसमें एक मैदान है एक प्लांट है बहोत बड़ा जिसके बाहर लाइन लगी हुई है।

में एक अ ब्लू कलर का फुग्गा है रेड कलर का है पिंक कलर का है व्हाइट कलर का है और बहोत सारी महिलाएँ--

खड़ी है एक जेंट्स भी खड़े है बोहोत सारे वर्कर्स ने ब्लू कलर का शर्ट पहना हैं।

कांच का कलर एकदम साफ है सामने बहुत सारी झाड़ियां है बहुत सारे पेड़ है एक टॉवर भी लगा है एक सफेद रंग की बिल्डिंग भी है।

इस तस्वीर में जो फोटो है एक खेत की है।

ये खेत में पूरा पानी भरा हुआ है एक बिजली का खंभा भी है और चारों तरफ हरे-भरे घास लगे हुए है पानी एकदम साफ हैं।

पौधे ये सब रखते हैं बहोत सारे पौधे रखे हुए है बहोत सारे गमले के पॉट रखे हुए हैं बहोत सारे कोन प्लास्टिक के आइटम भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर मे जो फोटो है यह एक दुकान की है जो कि ज्वैलरी की दुकान है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये किसी रेलवे स्टेशन की है।

एक आदमी पानी में बैठा हुआ है जो की झरने का आनंद ले रहा है पूरा नहा लिया है भीग गया है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये इस ये एक हस्पताल की बिल्डिंग है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक रेस्टोरेंट की है।

इस तस्वीर में जो फोटो इसमें एक बिल्डिंग है ये रात का नजारा है बिल्डिंग सफेद रंग की है।

सब ने सफेद रंग की टोपी पहनी हुई है एक फूल की माला भी रखी हुई है।

पार्क बोहोत बड़ा है बोहोत सारे घास के मैदान है छोटे छोटे लगे हुए है एक लाइट का पोल भी लगा हैं।

सारे बच्चे हैं महिलाएं हैं बहुत सारी टाइल्स भी लगी हुई हैं।

एक बड़ा सा लाइट का पोल भी है।

एक टीचर भी है व्हाइट ड्रेस पहने खड़ी हुई है।

जिसमें पीले रंग का दीवाल हैं सफेद रंग का पंखा हैं।

एक आदमी भी सफेद रंग की शर्ट पहने खड़ा हुआ है एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है एक टीवी ल--

इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक बिल्डिंग की--

जिसमें बहोत सारे लोग खड़े हैं चल रहे हैं बिल्डिंग का कलर सफेद रंग का है जिसमें बहोत सारे खिड़की हैं दरवाजे हैं।

तस्वीर में जो फोटो है एक पेट्रोल पंप की है।